बहुत सारे मच्छियां मर के पड़े हुए हैं दो लोग खड़े हुए हैं तीन लाइट्स लगे हुए हैं।

मच्छी के साइड में कुछ प्रॉन्स भी रखे गए हैं एक लोग बैठा हुआ है मच्छी को काट रहा है।

ये जो फोटो है बहुत सारे पक्षियों का फोटो है और ये छोटा-छोटा मिठुओं का फोटो है।

मुंह करके अपना वॉकिंग कर रहे हैं जिनके नीचे घास का फ्लोर पड़ा है और बहोत सारे--

ये डेकोरेशन जो हुआ है उसका पीछे बैकग्राउंड जो है व्हाइट --

उसके साइड में एक पड़िया दिखाई दे रहा है कहीं-कहीं जगह प घास है कहीं-कहीं जगह पर घास नहीं है।

दो लोग बैठ के खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट के ऊपर बहुत सारा लाइट्स पे सजे हुए हैं और रेस्टोरेंट बहुत सुंदर दिख--

मेरीगोल का और मूर्तियां और फूलदानी को एक साथ लाइट्स पर डेकोरेशंस किया गया है।

मंदिर के आगे की तरफ गनेश जी एंड सरस्वती मां है और उसके अंदर के तरफ जगन्नाथ जी सुभद्रा मां एंड बलभद्र जी भी है।